इ एगो पार्क के फोटो लागत अ जेमें की बहुत सारा गाड़ी लागल बा जेमें की बहुत आदमी भी खड़ा बाटे।

और एक ऐ_सी लवकता जिमें की बहुत सारा नजारा बा अइसन नजारा बहुत कम देखे के मिलेला बहुत खूब बा बहुत बिजोड बा बहुत अच्छा बा ।